यह कोई चर्च है जहाँ एक फादर बंटी खड़े है एंड बगल में एक मोटा काला आदमी बैठा है और इसके बगल में मोटी काली औरत बैठी हुई है।

अ बीच में एक टेबल है| इसमें एक फ्लावर लगी हुई है येल्लो कलर की ऊपर की डेकोरेट बहुत गजब है| ये फादर ने अपने गले में एक हार पहना है और ये--

यहाँ बहुत सारे लड़के एंड लड़कियाँ है वो सब यहाँ मिल के प्रोग्राम कर रहे हैं| बहुत सारे लाइट लगी हुई है पीछे की बैकग्राउंड ब्लू कलर की है| उसमें लिखा है एम पी --